इसमें फल फूल रखे हुए हैं।

और शर्ट शर्ट वगैरा भी है बहोत अच्छा मौसम भी लग रहा हैं।

खिड़कियां लटकी हुई है पूरा मैट लगा हुआ हैं काफी अच्छा है।